वहाँ पर अलग कारपेट बिछाई हुई होगी और यहाँ पर पर कुछ लोग होंगे । यहाँ पर पर बोहत सारी मशीने रखी हुई है। जिम करने की यहाँ पर काफी लोग आते होंगे। काफी फ़ेमस है ये।

और यह मूर्तियां कई सौ बरसो पुरानी हैंगी और ये खुदाई में प्राप्त हुई हैंगी और पुरातत्व विभाग को और ये अब म्यूजियम में हैंगी काफी प्राचीन मूर्तियां है ये।

यहां एक बैंक होगा जोकि काफी बड़ा होगा । यहां काफी बड़ी बिल्डिंग्स (buildings) बनी हुयी है की बहा --

यहाँ पर एक स्टोर हैगा और ये इसमें काफी सारे चीजें मिलती जाती हैंगी ।

यहाँ एक गेट हुआ है जो की डार्क रेड कलर का है और बाउंड्री हुई है। बाउंड्री में जो कार्टून बने हुए होंगे ओर यह बिल्डिंग का कलर सिलेटी होगा और आस-पास काफी पेड़-पोधे लगे हुए होंगे ओर पेड़ पर कुछ पोस्टर भी लगे हुए होंगे।